और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस तस्वीर में यहाँ पर जो कि लेडीज हैं। एक डॉक्ट --

इसका क्या भी न्यू न्यू उद्घाटन हुआ है और यहां पर बहुत सारे गुब्बारे लग रहे हैं और जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी --

इधर हीर जिसपे की नेक्सा श्रींस का साइंस का एक बोर्ड लगा है जहां पर की हम देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारी कारें भी खड़ी है एक हाईवे का फोटो है जहां पर की रोड चल रहा है।

ये हम तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि यहां पर दो थाली है जो कि बजाने वाली होती हैं।